बहुत ही सुंदर सफेद रंग कि नकाशी गई है।

चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है और --

और उसके पास तीन पेड़ हैं जो कि हरी-हरी पत्तियों से खिरे हुए हैं।

और टाइल्स का रंग काला है साथ में भूरे रंग की पट्टी रखी हुई है।

साथ में बोतल्स् और पोड़र रखे हुए हैं। मिरर में एक आदमी का --

टेबल पर बजाने के लिए ढोलक और मंजिरी रक्खी हुई है जिसे --

दीवारों के उपर बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स लगाई हुई है।

फूलदान में बहुत ही सुंदर लाल फूल है जोकि पानी की बूंदों से --

ढ़के हुए हैं और उनकी पत्तियों का रंग हरा है।

बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं। जिनकी पत्तियों का रंग हरा है।

प्रथमा बैंक मुका मुरादाबाद शाखा- कारक सराय कार्य इसमें --

बताया हुआ है और लोहे के दरवाज़ा लगाया हुआ है।

लाल कलर और कुछ रंग सफेद रंग किया हुआ है। कुछ पुरुष --

रात के समय में रेलवे स्टेशन पर खंबे लगे हुए हैं।

उसके साथ में ही पानी की दो बोतल --

और बिजली की तारें हैं आसमान सफेद रंग का प्रतीत होता है।

और झंडे पर संतरी सफेद हरे रंग की पट्टियाँ हैं और --

चारों तरफ सफेद रंग की दीवार है और छत के ऊपर --

पत्तियों का रंग हरा है ओर यह चार मंजिला इमारत है जिसमें --

माथा टेक रहे हैं और उनमें से कुछ महिलाएं बूढ़े पुरुष और --

चारों तरफ लाल ईटों का उपयोग किया गया है।

और पह अपनी दुकान के पास लाल कलर के शर्ट पर --

कलर में बहुत सी ट्राफियां रखी हुई है।

और बैलून्स लगाए हुए हैं और मिक्की माउस लगाए हुए हैं।

बोहोत सुंदर लाइनिंग लगाई हुई है और --